एक का ब्लू रेड है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं।

ये एक वाटर पार्क है बहोत ही बड़ा यहाँ पे बहोत सारी स्लाइडस हैं।

ये एक मंदिर है जहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई है और मंदिर जो है वो सजा हुआ है पूरा।

सब लोग है जो है बहुत सारे लोग लॉन में बैठे हुए है पेड़ लगे हुए है बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर उसका कलर मंदिर का कलर ऑरेंज है।

ये एक जिम है जिसका नाम है ड्रीम बिग और यहाँ पर दो लड़के है जो एक्सरसाइज कर रहे है।

ये एक खेत है जिसके अंदर खेती हुई है पत्तागोभी की जो बहुत सारे पत्तागोभी है इसके अंदर

और आज ट्रैन के साइड में लोग चढ़ रहे है वो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए है।

एक टेबिल भी है जो बैठने की चेयर होती है साइड में पहाड़ी है।

ऊपर वेट लिफ्टिंग की मशीन रखी है नीचे मगज़ के लड्डू गुलाब जामुन बर्फी सब कुछ रखा हुआ है।

और बहुत सारी छोटी-छोटी पॉम्पलेट मछलियाँ है जो की एक कसाई काट रहा है।

ये एक डी.जे. है जिसका नाम है शर्मा ऑडियो बहुत सारे स्पीकर है इसमे।